ये चित्र एक लाइब्रेरी की दिख रही है और यहाँ पर ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

और यहां पर ऊपर सफेद रंग का बोर्ड है जहा पर अस्पताल लिखा हुआ है अंदर की तरफ दरवाजा दिख रहा है जो शीशे का है और बाहर एक मेज है।

चित्र मे एक खुला मैदान दिखाई दे रहा है नीचे जमीन पर बहुत सारी घास है।

यह चित्र मे एक हॉस्पिटल दिख रहा है और यहाँ पर ऊपर बोर्ड लगा हुआ है।

नीचे की तरफ ह बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं।

यह चित्र मे एक बहुत बडा मैदान दिख रहा है।